ये एक किसी हॉल की फोटो दिखाई दे रही है।

यहां हॉल में बहोत सारी लाइट के फाग्स भी पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं यहां एक आदमी भी बैठा हुआ है।

ये किसी जिम की फोटो दिखाई दे रही है।

और यहां पर बहुत सारे लोग है जो एक्सरसाइज करते हुए भी नजर आ रहे है यहां पर कुछ बड़े बड़े --

ये एक जिम की फोटो दिखाई दे रही है जहां पे बहोत सारी जिम की मशीनें रखी हुई नज़र आ रही है।

यहां पे बहुत सारे बड़े बड़े अशोक के पेड़ भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जिसके आस पास बड़े बड़े पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और एक पानी का पाइप भी जा रहा --

इस बिल्डिंग में बहोत ही सारे पेड़ पौधे भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं और गेट पे तिरंगे का कलर करा हुआ भी नजर आ रहा है।

यहां पर कुछ नूडल्स के पैकेट रखे हैं कुछ नमकीन के पैकेट रखे हुए है कुछ बिस्किट के पैकेट रखे हुए है और भी बहोत सारा सामान --

यहां पर एक लकड़ी की एक टेबिल भी लगी हुई दिखाई दे रही हैं।

तट के पास की फोटो दिखाई दे रही है जहां पर बहोत सारे पत्थर पड़े हुए नजर आ रहे हैं छोटे छोटे।